दो तीन गाड़ी भी खड़ी हुई है और बाइक भी खड़ी हुई है।

कुछ पिलर भी व्हाइट कलर के दिख रहे हैं।